अं रखा हुआ है और क्रीम कलर का बोर्ड दिख रहा है।

कुछ वर्डस लिखे हुए है एक क्लॉक दिख रहा हैं जो व्हाइट कलर का है।

यहां सीलिंग के ऊपर कुछ डिजाइन वगैरा बने हुए हैं जो ब्लैक एंड वाइट कलर में हैं अ एक सीढ़ी दिख रहा है जो रेड कलर का है।

इस फोटो में हमें एक बैनर दिख रहा है जीसमें कुछ रेड --

ये जो येलो और ग्रीन कलर के है ब्लैक कलर के है।

दरवाजा दिख रहा है जो कांच का बना हुआ है बाहर एक साइकिल लगा हुआ है और कुछ बाइक वगैरह लगे हुए हैं एक बाइक पर हेलमेट रखा हुआ है।

बच्चों ने माथे पे व्हाइट कलर की टोपी पहने हुए हैं कुछ रेड --

पैसेंजर गाड़ी दिख रहा है जो ब्लैक येलो कलर का एक लोडिंग गाड़ी दिख रहा है जो येलो कलर का ये ट्र --

इस फोटो में हमें एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है जो येलो कलर का है।

इस फोटो में हमें ग्राउंड टाइप का दिख रहा है जिसके बाहर एक मंदिर भी दिख रहा है और कुछ--

ये पिलर टाइप के बने हुए हैं जो वाइट कलर के हैं एक रे--

का इंजन दिख रहा है जिसमें कुछ येलो कलर की हुए है कुछ बोगी वाली लगे हुए हैं।

पेड़ दिख रहे हैं दो टंकी दिख रही हैं जो वाइट कलर है।